कुछ चे नीचे डब्बा वैसा भी दिखाई पड़ रहा ब्लू कलर का एक चेयर चेयर भी दिखाई पड़ रहा है।

ये पिक्चर में हमको उसमें एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है जिसमें पार्किंग पर बाइक्स बाइक्स लिखा हुआ है।

बल्ब एक व्हाइट कलर का बल्ब दिखाई पड़ रहा है।

जिनमें एक काला कलर का कड़ाही दिखाई दे रहा है जो गोल शेप में है।

में हमको एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई पा रहा जिसमें स्टेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

पिक्चर हमें एक ब्रिज दिखाई पड़ रहा है छोटा सा ब्रिज मे कुछ आदमी खड़ा हुआ है।